जो वहां पर भी व्यक्ति खड़ा हुआ है।

और कुछ यहां पर पेड़ सूखे हुए खड़े हैं।

येलो कलर का कॉलम खड़ा हुआ है इसमें।

और बॉडीबिल्डर यहां पर बॉडीबिल्डरों के फोटो लगे हुए है बहुत बड़े बड़े।

ये दो सो साइड रोशनी ने फैकती है।

और काउंटर पर कुछ बैनर्स लगे हुए हैं।

इसमें यहां पर नफ्सी जहान लिखा हुआ है।

यहां पर गुब्बारे लगाए हुए हैं।

और इस इसमें सामान रखा हुआ है कुछ शीशे के अंदर।

लोहे की जाली पड़ी हुई है।

और यहां पर एक लेडीज खड़ी हुई है।

और ऊपर यहां पर फ्लाईओवर की छतरी पड़ी हुई है।

जिस पर पेंट हल्के व्हाइट कलर का दिया गया है।

और नीचे की जमीन कच्ची है यहां पर--

स्टेज पर खड़े हुए गिटार बजा रहे हैं।

और ऊपर एक स्टील गोल्ड लिखा हुआ है।

और पर्दे भी लगे हुए हैं गोल्डन कलर के।

और इसमें एक यहां पर कुछ लकड़ी का सामान रखा हुआ है।

और यहां पर एक व्यक्ति सायकल से जा रहा है।

और आगे तीन यहां पर पैर धरने के एक पांव धरने का है।

और पेड़ पौधे भी खड़े हुए हैं बहुत सारे।

यहां पर बहोत सारी बाइके की खड़ी हुई हैं।

और यहां पर कुछ व्यक्ति अपने सेट ले रहे हैं जिम के--

और इसमें यहां पर गमले भी रखे हुए हैं फुलवाड़ी यानि की।

यहां पर तीन कार खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं।

ऊपर की इसमें डोरी लगी हुई है।

यह एक मान शोरूम है।

जिस पर रेडीमेड एंड कॉस्मेटिक की दुकान है।

एक बाइक आ रही है आगे से रस्ते पर ओ--

जिसमे यहां पर कई सारे सोफे पड़े हुए है।

बहुते पर्दे लगे हुए हैं।

कुछ यहां पर आदमी खड़े हुए हैं।

एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है यहां पर।

और एक पर रुपए उनचस रूपए--

इस पर दीवार पर पेंट लीले--

यह एक परचून की दुकान है।

सभी व्यक्तियों ने यहां पर जरकिन पहनी हुई है।

पीछे की साइड में वो बहुत भीड़ है।

और इसमें कलर ऊपर दीवार पर जो दिया है।

और सब ने अपनी अपनी चद्दर बिछा रखी है।

एक बाहर खोका भी है चाय का--